यहाँ पे कई साड़ी कुर्सिया रखी गई है जहाँ पे कुछ आदमियां बैठे है। और ऊपर लाइट भी लगाया गया है जो काफी सुंदर है।

और इसके सामने वृक्ष भी है जो काफी सुंदर है।